यह एक स्टेशन टाइप का लग रहा हैं बगल में चेयर पे एक आदमी बैठने जा रहा हैं एक आदमी पिलर के साथ सामने खड़ा हैं।

तो हेलो भाइयो आप लोग देख सकते है यहाँ पे एक बोहोत बड़ा रूम है जिसमे --

एक रुई है में कितनी साड़ी लाइटे जली हुई है।

एक आदमी सामने वाइट शैर्ट पेहन के हाथ डाल के खड़ा है बोहोत सारा चेयर है ।

आप लोग देख सकते है यहा पे बोहोत बड़े बड़े पेड़ पोधे है ।

यहा पे दीवाल पे इमरजेंसी टाइप का लिखा हुआ है ।

बगल में एक स्प्राइट का दुकान है जहा पे --

पानी का बोतल भी है स्प्राइट है थम्स अप है।

यहा पे एक बोहोत बड़ा फेन लगा हुआ है ।

दीवाल पे दो वाइट कलर के डब्बे टाइप के कुछ टिश्यू पेपर होंगे ।

आप लोंग देख सकते है यहाँ पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है।

एक लाइटे जली हुई है अन्दर में एक गेट है ।

यहा पे लग रहा है न्यू उप्घाटन हुआ है इस ऑफिस का --

आप लोग देख सकते हैं यहां पे यहां पे एक रोड है रोड पे एक बाइक जा रही है उस पे एक आदमी बैठा हुआ है एक आदमी पीछे से सामान ले के बैठा हुआ है।

उस साइड आप लोग देखिये तो बोहोत सारे चीज़ टांगे हुए है।

बोहोत सारे बच्चे यहा पे एक्सरसाइज़ कर रहे है क्रिकेट खेल ले फुटबॉल खेल ले है ।

उसके सामने बोहोत सारे गाड़िया उसके सामने एक वाइट कलर का घर है ।

रोड देखिये रोड पे बोहोत सारी गाड़िया आप टर्न कर रहे है ।

बोलिंग पोस्टर भी लगे हुए है बोहोत बड़े बड़े पेड़ है एक बोहोत बड़ा पोल है जिससे तार सप्लाय --

तो हेल्लो भाइयो आप लोग देख सकते है यहा पे यहा पे बोहोत बड़ा तालाब है।

तलब के सामने बोहोत बड़ा सा नाव भी है बोहोत सारे नाव है यहाँ पे आप देख सकते है।

तो हेलो भाइयो आप लग देख सकते यहाँ पे यहाँ पे एक माजिद टाइप का बना हुआ है जिसके अन्दर --

एजेंसी है यहा पे बिच में एक टेबल लगा हुआ है उसके साइड में तीन चेयर है।

इसमें बोहोत सारे आदमी बेठ के इंजॉय कर रहे है बोहोत आदमी खड़े है खड़े हो कर इंजॉय कर रहे है।

एक आदमी सामने से सेल्फी ले रहा हैं फोटो खींचा रहा हैं आप लोग देख सकते हे कितने बड़े बड़े पथर हे छोट छोटे घास भी हे साईड में आप लोग देख सकते हैं।

तो हेल्लो भाइयो आप लोग देख सकते है यहा पे यहा पे बोहोत बड़ा बड़ा पत्थर है।

बिच में एक पोल है पोल से उपर में बोहोत सारी कारे गयी हुई है।

सारे गेट खुले हुए है आप लोग देख सकते है दो ब्लू कलर के बोहोत सारे डब्बे है यहाँ पे --

एक रेड कलर का डब्बा टाइप का बना हुआ है एक टीवी है बोहोत सारे --

बाहर में बोहोत सारा चिप्स हिप्स का पैकेट कटा हुआ है टंगा हुआ है ।

कुछ कॉफ़ी होपी शयद बना रहा है बगल में एक तोलिया टंगा हुआ है लाइटे जली हुई है ।

बोहोत अच्छा से कुछ फोटो होटो भी लगे हुए है पोस्टर टंगे हुए है ।

तो हेल्लो भाई लोग आप लोग देख सकते है यहा पे --

बगल में एक डस्टबिन है ए_सी लगा हुआ है रूम में --

यहा पे एक रेलवे स्टेशन का बोहोत लंबा पटरी है सारी गिट्टी है सामने एक घर है ।